जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक लिखा हुआ है जोकि नील रंग का है बैंक के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए है तथा कुछ औरते खड़ी है जो कि--

सॉल ओढ़े है तथा आदमी है जो जैकेट पहने हुई है यहाँ के जो जीने है वो काले रंग के शटर लगा हुआ है सफेद रंग का दिवार जो है वो सफेद रंग की-- --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ बहोत सारे आदमी और आग जल रही है कुछ कर्तव्य हो रहा है तथा रात्रि का समय है यहाँ पर तार जा रहे छोटी-छोटी हरी तथा--

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर महात्माओ की मूर्ति बनी हुई है जो की छत्र मे बैठे हुए है ये सिल्वर कलर गोल्डन कलर के है तथा यहाँ पर जो ज़मीन है वो ल--

पड़ा हुआ है गुलाबी रंग का दो आदमी खड़े हुवे है इनहोने एक ने हरी तथा एक ने नीली टी शर्ट पहनी है और एक ने नीली पेण्ट पहनी है ऊपर की छत सफ़ेद है --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ये रोड है जो की भूरे रंग की है यहाँ पर बॉउंड्री खींची है जो की सफ़ेद रंग से खींची गयी है सामने की बिल्डिंग जो --

जैसा की मै देख पा रही हूँ ये एच. डी. एफ. सी. बैंक है जो कि नीले रंग की ए. टी. एम. यहाँ लगा हुआ है कुछ लोग खड़े हुए है ए. टी. एम. के बाहर--

खिड़कीया हैं भूरे रंग की यहाँ पे जो नीचे जमीन है स्लेटी रंग की जीने बनी हुई है तार डला हुआ है आसमान नीला रंग का है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर दो आदमी रेलिंग के ऊपर खड़े हुए है तथा सामने सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है और यहाँ पर नीचे मे बोहत सारी बाइक स्कूटी इत्यादि--

एन नुकीली दार हैं इसमें जमीन जो है वो इसकी भूरी है बिलकुल और ये भूर भूरेदार है इसमें लगी हुई लाइन से--

जैसा की मे देख पा रही हूँ यहाँ पर एक होटल है।

जो की यहाँ पर भूरे तथा क्रीम रंग का है बगल की दिवार भूरी है और यहाँ पर लाल और नीले रंग की भी दिवार जिसके बगल मे होटल है।

गेंदे लगी है लाल पिली नीली हरी और गुलाबी रंग की तथा आस पास पीछे झठे लगे हुए है इसमें --

जैसे की मै यहाँ देख पा रही हु यहाँ बहुत बड़ा हाथी है तथा यहाँ पर एक आदमी है जो की हाथी के ऊपर खड़ा हुआ है हाथी जो है काई तथा स्लेटी रंग का है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहोत सारे पत्ते है जो की फूल पत्ते लगे हुए है हरे पिले हरे और भूरे रंग के--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अ बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है तथा --

बिच में मिट्टी पड़ी है वो यहाँ पर पत्थरो में वो पिले और काले और भूरे रंग के तो इसमें घासे भी हुए है छोटी-छोटी महीन-महीन घासें वो भी आसमान नीला --